और औरत भी खड़ी है।

यहां पर कुछ आदमी लेंटर डाल रहे हैं।

इस ढाबे में नीले रंग की लाइटें लगी हुई है।

सोफे के पास में एक कांच का स्टूल पड़ा है।

पास में एक काउंटर रखा है।

यह एक पूजा करने का स्थल है।

यहां पर औरतें और आदमी भी खड़े हैं।

मैदान में पानी पेरने का पाइप पड़ा है जिसका कलर हरा है।

दीवार पर घड़ी लग रही है और पेटीएम का टैग भी लग रहा है।

गेट के अंदर कुछ बिल्डिंग दिख रही हैं जिस पर अभी पलस्तर नहीं हुआ।

यह एक शादी है शादी में दो दूल्हे नजर आ रहे हैं।

पास में ड्रम रखे हुए हैं जिनका कलर नीला है।

यह एक बस्तर डेरी फार्म है डेरी फार्म के अंदर एक व्यक्ति है जिसने पीले कलर की टीशर्ट पहन रखी है।

यह एक मछली बाजार है।

पिलर पर एल_ई_डी लगी हुई है। एल_ई_डी चल रही है।